ये मार्केट का दृश्य है यहां पे एक व्यक्ति बैठ कर फोन से बाते कर रहा है दूसरा व्यक्ति खड़ा है सामने दुकान लगा हुआ है।

इधर इसमें बहुत बड़ा तालब दिखाई दे रहा है तालाब के आजू-बाजू में काफी बड़े-बड़े पेड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहें हैं।

ठीक से है उसके बगल में एक मोबाइल टॉवर खड़ा है सामने एक भवन है यह पुराना भवन है बगल में एक मकान है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।